एक तस्वीर दिखाई दे रहा है अगल बगल बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर का रंग उजला है अलग बगल --

नीचे बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

भी इटा भी रखा हुआ है।

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है अगल-बगल बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं एक घर दिखाई दे रहा है घर का रंग उजला है।

उसके नीचे तीन गेट हैं गेट का रंग--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

एक खंभे पर एक है मूर्ति खड़ा हुआ है वो दिखाई दे रहा है।

नीचे पानी दिखाई दे रहा है।

घर भी काले कलर से पेंट हुआ है।

बगल बगल बहुत सारे गाड़ी दिखाई दे रहे हैं ऊपर आकाश दिखाई दे रहा है।

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है अगल-बगल बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे --

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है अगल-बगल बहुत सारे--

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है अगल-बगल बहुत सारे आदमी दिखाई दे --

जंगल दिखाई दे रहा है जंगल का--

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है अगल बगल बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं ।

पीला है एक गेट दिखाई दे रहा --

एक दिखाई दे रहा है .]

बाहर बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

अगल-बगल बहुत सारे गाड़ी दिखाई दे रहा है।--

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है अगल बगल बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।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

एक खटाल दिख रहा है खटाल का रंग पीला कलर का खटाल है।

एक घर दिखाई दे रहा है घर का रंग पीला है।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

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है अगल बगल बहुत सारे पेड पौधे दिखाई दे रहे हैं।

आकाश का रंग उजला है अगल-बगल बहुत सारे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

घर का रंग उजला है अगल बगल बहुत सारे जिम करने वाला सामान रखा हुआ है .

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है अगल-बगल बहुत सारे सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है एक घर दिखाई दे रहा है घर का रंग उजला है।

अगल-बगल बहुत सारे रखा हुआ है .

दिखाई दे रहा है अगल-बगल बहुत सारे बहुत सारे गाड़ी दिखाई दे रहे हैं।

उजला कलर का बिल्डिंग .]

आकाश का रंग उजला है अगल-बगल बहुत सारे पे दिखाई दे रहे हैं गाड़ी दिखाई दे रहा है बहुत सारा .

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है अगल बगल बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

अगल-बगल बहुत सारे पेड़ बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं हरे भरे--

अगल बगल बहुत सारे तो बूढ़ी दिखाई दे रही हैं।

दिखाई दे रहे हैं अगल-बगल --

बहुत सारे आदमी है घूम रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं .

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है अगल-बगल बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

एक फूल का पंडाल लगा हुआ है वो दिखाई दे रहा है।

ऊपर पोस्टर लगा हुआ है पोस्टर पर कुछ लिखा हुआ है।

छत है छत पर लाइट लगाऊं लाइट का रंग उजला है।--

दिखाई दे रहा है अगल बग़ल बहुत सारे पानी दिखाई दे रहे हैं।

एक सब आदमी बैठा हुआ है अगल बगल भी बहुत सारे आदमी हैं।

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है अगल बगल बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारा माला पहने हुए हैं अगल बगल हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

अगल-बगल बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

बेंच पर बहुत सारे सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है अगल बगल बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

एक घर दिखाई दे रहा है घर का रंग उजला है।

अगल-बगल बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है।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

घर दिखाई दे रहा है घर का रंग लाल है अगल-बगल बहुत सामान रखा हुआ है।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

एक अंदर आदमी सेल्फी खींच रहा है।

बहुत सारे टेबल कुर्ची सब सजा हुआ है।

कोना में बाजा भी रखा हुआ है अगल-बगल बहुत सारे सामान रखा हुआ है।

पंखा ऊपर फिट हुआ है अगल-बगल बहुत सारे लाइट दिखाई दे रहे हैं ।

एक आगे ब्राउन कलर का पर्दा भी लगा हुआ है।

अगल बगल बहुत सारे नाव दिखाई दे रहे हैं ऊपर आकाश दिखाई दे रहे हैं।

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है अगल-बगल बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

पंखा चल रहा है अगल-बगल बहुत सारे आदमी बैठा हुए है।

आदमी दिखाई दे रहे हैं उजला कलर का घर है।

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है अगल-बगल बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

नीचे बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं एक हवाई जहाज दिखाई दे रहा है हवाई जहाज का रंग उजला है।

उस पर कुछ फिगर बनाया हुआ है।

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है अगल-बगल बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है तस्वीर के अंदर बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं अगल-बगल बहुत सारे--

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है तस्वीर में बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

नीचे बहुत सारे सामान रखा हुआ है।